दीवारों पर कई सारा लोगों द्वारा चित्रकारी भी करी छ दीवार का अगाड़ी कई सारा डुंगा डाला छन पड़यां जो एक खाली जमीन पर छीन पड़यां।

ईमारत से दिखिक छ लगण लगीं की वो काफी पुराणी और भव्य ईमारत चा।

फ़ोटो मजी एक दुकान को द्रश्य छ जे देखै यन छ लगण लग्युं की ये कपड़ों की दुकान छ।